हमें पता है इस दुनिया में ऐसे बहोत से लोग मौजूद हैं जो मोटा--

इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि हर लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहां पर चीजें बेच रहे हैं।

हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि काफी लोग यहां आकर खरीद भी रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि यहां की चीजें भी बिल्कुल साफ सुथरी और --

कमाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो पीछे रह जाते हैं--